एक बाइक है उस पे एक आदमी बैठे हुए हैं।

आगे गमला है उस गमला में एक पौधा लगा हुआ है ।

एक सूट पहन के ख --

इसके आगे ग्लास बहुत मस्त लग रहे है।

ए स्टेट बैंक का ए.टी.एम. है।

इसमें मछली का शायद बीज डाला हुआ है ।

एक बिल्डिंग टूटी-फूटी सी लग रही है।

और गोले से बाउंड्री दिया हुआ है।

पक आसमान नीला दिखाई पड़ रहा है ।

बहुत सारे साइड - साइड से बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है।